और ए एक तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है पीछे कुछ घर बने हुए है बाजू में घर के --

यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है बुक स्टे स्टेशनरी है शायद तक पीछे खन में बहुत सारी बूके है।

और दो कुछ खंबे भी है रेड रेड कुछ मशीने भी राखी हुए है पीछे एक स्टूल रखा हुआ है।

और कुछ लाइट के खम्बे भी लगे हुए है बीच में से कच्ची रस्ता गयी हुई है।

सामने बिल्डिंगस बनी हुई है जिनके बाजू में पेड़ लगे हुए है कुछ छोटे है कुछ बड़े बड़े है।

सामने एक स्कूटी वाले भैया भी खड़े हुए है बैंक के ऊपर --

यहाँ पर पत्थरों से दीवार बनायीं गयी है और बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए है कुछ छोटे छोटे --